ढेर सारे चेयर भी नजर आ रहे चेयर का रंग लाल और हरा है।

यह तस्वीर एक बुक स्टोर से लिया गया है।

ढेर सारे बाइक नजर आ रही है।

वहां धेर सारे शर्ट लगे हुए हैं।

वो माली का काम कर रही है।

इन्हे बालू भी नजर आ रहे।

यह तस्वीर एक पार्क के अंदर से लिया गया है यहां पर ढेर सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

और दो सूखे पेड़ नजर आ रहा है।

और यहां पर ढेर सारे पौधे भी नजर आ रहे हैं।

ये तस्वीर सब्जी मंडी के बाहर से खींचा गया है।

बहोत सारे पेड़ हैं और एक मकान भी नजर आ रहे हैं।

बेंच के ऊपर एक जग है।

एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड का रंग काला और सफेद रंग है।

ऊपर एक पंखा पंखे का रंग काला है।

ढ़ेर सारे पेर नजर आ रहे है पेर का रंग हरा है।

छोटे छोटे पत्थर भी नजर आ रहा है और पेड़ भी नजर आ रहा है।

तस्वीर लिया गया है एक कॉलेज के बाहर से --

यहां पर सोलर प्लेट भी नजर रहे हैं।

मोटरबाइक है मोटरबाइक का रंग लाल और काले रंग का है।

में एक स्ट्रीट लाइट भी नजर आ रहे है।

ये तस्वीर एक कैफे के बाहर से लिया गया है।

दीवार भी है दीवार का रंग सफेद है।